और साइड में एक शटल बनी हुई है दो आदमी स्टॉल के पास खड़े हुए हैं और पीछे साइड बहुत सारे--

और रेलवे स्टेशन का है ये सीन और रेड कलर की बाल्टी रखी हुई आगे साइड --

गार्डन में गार्डन सा बना हुआ है बहोत सारे ग्रीन घास लगे हुए है।

यह डॉक्टर की क्लीनिक का है सीन है और यहां पे वाइट कलर की टीम है।

हाइट नापने वाला भी इंच लगा हुआ है।

यहां जो है और ग्रीन ग्रीन कलर के पत्ते कोई सात --

गेट खुला हुआ है सामने से फोन रखा हुआ हैऔर --

ये एक कंप्यूटर अ रूम है यहां पे बहोत सारे कंप्यूटर रखे हुए हैं और टेबल और चेयर रखी हुई हैं।

दो मंजिल बिल्डिंग बनी हुई है और शटर भी लगी हुई है साइड में।

नीचे बहुत सारा स्टेट डेकोरेशन किया हुआ है और ऊपर कर्टन लगा हुआ है जो रेड और ग्रीन कलर का है।

साइड से खिड़कियां बनी हुई है जिसमें कांच लगा हुआ है बाहर का रोड दिख रहा है जहां पे बहुत सारे --

और साइड में एक फ्लावर पॉट रखा हुआ है जिसमें पिंक कलर का फ्लावर लगा हुआ है।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

ये एक सीन है यहां पे एक गार्डन सा बना हुआ है जो बहोत वहां पे एक आदमी खड़ा हुआ है जिसने ब्लू कलर का कुर्ता पजामा पेहना हु--

ये एक रूम है यहां पे एक कंगाल रखा हुआ है जिसको ऑक्सीजन लगाया गया है मशीने रखी हुई है।

और एसी लगा हुआ है बहुत सारे पंखे रखे हुए हैं कर्टंस लगे हुए हैं पिंक कलर --

ये एक बहोत बड़ा रूम बना हुआ है यहां पे बहोत सुंदर झुमर लगा हुआ है और वॉल पेंटिंग हो रखी है।

पीछे बहुत सारी घास दिख रही है साइड में रोड बना हुआ है।